है अथी बज-बज डांस जो करता है डी.जे. वाला उ है। फूल फूलदानी है।

गाछ है अथी स्कूल है और यहाँ गाछ वृक्ष है खेत है।